जहाँ पर नदी किनारे पर कुछ मच्छवारे है जो जिन्होंने यहाँ पर--

क्लास के अन्दर पढ़ाती हुई नज़र आ रही है क्लास के अन्दर यह महिलाएँ घुम रही है यह क्लास --